डेकोरेशन बहुत ही सुन्दर दिख रहल छे।

गिटार छै बेंजो छै।

घर उजला कलर के छे उजला रंग से रंग्लवा छे।

नीरजन स्थान छै जेकरा में पेड़-उड़ लगल छै।

यहाँ बिजली के लिए तिन गो तारो गेल छै।

क्रेन आगे के फिल्ड के खुनाई करे में लगल छै।

भवन निर्माण के लिए एक एक क्रेन मिट्टी खून राहयेल छे।

अ गाड़ी के रिपेयर कराए के लिए।

मुस्लिम के घर नियर मुस्लिम के अंदर पीर पैगम्बर की कब्र होता है सब मुस्लिम सब नमाज़ अदा कराल जाएछ है।